दो लड़के एक लड़का यहां पे--

ये हमें बहुत ही सुंदर एस_बी_आई बैंक --

ई जगह बहोत सुंदर लग रही है।

और व्हाईट कलर का पेंट किया है।

और हाथ धोने के लिए सामने सिंक है।

रिसेप्शन की तरफ देख रहा है।

व्हयू दिख रहा है। लकड़िया दिख रही है।

हां और आसमान भी बहुत सुंदर है पीछे पहाड़--

कूड़ा फेंकने के लिए दो दो कूड़े है।

ये बहोत ही सुंदर स्कूल है फेमस भी है।

और आसमान बहुत ही सुंदर दिख रहा है।

यहां पर हम देख रहे हैं बहोत ही मेहनत करता हुआ--

ये बहोत से सुंदर एक हाउस है।

एक डंडा और भी है जमीन के अंदर--

छोटे-छोटे पेड़ हैं बड़े-बड़े पेड़ हैं।